यह एक रेलवे ट्रैक है जहां पटलिया दिखाई दे रही हैं और बहोत सी रेलगाड़ियां खड़ी हुई हैं।

इसमें बड़ी-बड़ी दो स्ट्रीट लाइट भी लगी हुई हैं। ग्राउंड के चारों तरफ कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक स्टेशनरी दुकान है जहाँ पर बहुत से विभिन्न- विभिन्न प्रकार के पेन पेंसिल किताबें कॉपियाँ आदि मिलते हैं।

कुछ झाड़ियां भी नजर आ रही हैं। पेड़ पौधे बहोत ही अद्भुत दिखाई दे रहे हैं।

जिस पर वाइट चादर बिछी हुई है और इसमें एक चेयर भी रखी हुई है जिसके बाजू में एक पर्दा लगा हुआ है।

यह एक लाइब्रेरी है जहाँ पर विभिन्न विभिन्न प्रकार की पुस्तकें पत्रिकाएं रखी हुई हैं।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

यह एक नेशनल पार्क है जहाँ पर एक बाघ दिखाई दे रहा है।

यह एक कपड़ों की दुकान है जिसमें महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए कपड़े मिलते हैं इसमें एक स्टैचू खड़ा हुआ है जिस--

यह एक चट्टान है जिस पर कुछ लोग चल रहे हैं।

पेड़ पौधों के पास एक किला भी नजर आ रहा है जो पेड़ पौधों के पास ही है।

यह एक पार्किंग एरिया है जहाँ पर बहुत सी गाड़ियाँ पार्क की गई हैं यहाँ पर विभिन्न प्रकार की गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं।